और धर्म से जुड़े रहना चाहिए हमेशा जय हिन्द जय भारत।

आ जयंती रखी गई है कलश बैठाया गया है और जयंती बहुत ही हरियाली जैसी दिख रही है।